यह एक स्कूल है जिसका नाम स्टार ग्लोबल पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए कही क्योकि इसके स्कूल के छत पे एक बोर्ड लगा है जिसमें यह बात लिखी गई है और इसके नीचे एक बस भी है जो की स्कूल वैन है।